और ये माउंटेन स्टाइल में स्कूल दिख रहा है।

यहां पे काफी सारे हिरन नजर आ रहे हैं।

इस पे एक स्टैचू गोल्डन कलर में खड़ा हुआ है।

टेबल पे केक और मिठाइयां खा रहे--

जहां पे काफी टाइप के वाशिंग बेसिन नजर आ रहे हैं।

ज्यादातर व्हाइट कलर के दिख रहे हैं पीछे टाइल्स के डिजाइन टाइल्स के--

साइज कटे हुए दिख रहे हैं टेबल लगी है यहां बड़ी--

जो फोटो एक हॉस्टल का दिख रहा है जहां पे ए_बी_जेड_जेड_ओ_सी --

यहां पे काफी सारी जिम की मशीने है।

यहां पे लॉन्ड्री का एड का बैनर लगा हुआ है ये एक नीले कलर का धारी वाला--

दरवाजा है जिसके ऊपर बैनर लगा हुआ है।

हाथ में इनके आग से जलती हुई मशाल है।

अंदर टेबल्स लगी हैं चेयर लगी हुई हैं एक काउंटर दिख रहा है।

जहां पे बड़े बड़े सारे पेड़ दिख रहे हैं।

जहां पर जमीन पे हरे कलर की घास दिख रही है।

काफी सारी चेयर एक ही कलर की यहां लगी है उसपे बहोत सारे लोग बैठे नजर आ रहे--

स्टेज के ऊपर काफी सारा डेकोरेशन है।

टेबल पर जग कप नजर आ रहा है।

ये लकड़ी के दरवाजे से बनी दुकान है।

उसके बाहर काफी बड़ी सारी पेंटिंग दिख रही है।

ये एक पेट्रोल पंप का फोटो दिख रहा है।

यहां पे हरि ग्रास दिख रही है छोटे छोटे हरे पेड़ दिख रहे हैं।

यहां पे एक टॉय शॉप दिख रही है।

यहां का बैकग्राउंड और मशीनों का कलर काला है।

ये ग्राउंड की पिक्चर नजर आ रही है जो बड़ा सारा ग्राउंड है।

तो ये एक क्रिकेट की तैयारी है आसपास सीलिंग और--

और काउंटर के ऊपर यहां पर माइक्रोवेव दिख रहा है नल दिख रहा है काफी सारे बर्तन दिख रहे हैं।